यह देखने में बहोत ज्यादा सुंदर लग--

हुए नजर आ रहे हैं और--

अलग प्रजाति की मछलियां भी दिख रही है और--

इमेज मे मुझे एक मैरिज गार्डन दिख रहा--

चर्च में शादी होते हुए दिख रही--